है जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी गई है।

या सारे व्यक्ति महिलाएं दिखाई दे रहे तथा एक बड़ी मीनार दिखाई दे रही--

उधर बहुत सारे वस्तुएं जमीन में पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ईटों का बाउंड्री किया हुआ दिखाई दे रहा है तथा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे बहुत बड़ी मीनार दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में मुझे छत की ढलाई होती हुई दिखाई दे रही है।

हॉल का छत भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है तथा बहोत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यहां अनेक प्रकार के खाने की वस्तुएं रखी गई है।

तथा खिलौने एवं विद्युत का खंबा भी दिखाई दे रहा है तथा विद्युत का केबल भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे एक हरा रूम दिखाई दे रहा--

लाल फर्श में बहुत सारे व्यक्ति व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे --

इस दृश्य में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।

मनोरंजन का वास्तु भी मौजूद दिखाई दे रहा है।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

बड़ा मैदान भी दिखाई दे रहा है तथा सड़के भी दिखाई दे रही--